और यहाँ पेट्रोल पंप में बैलून्स भी लगे हुए हैं और यहाँ छोटे-छोटे फ्लावर्स के पेड़ भी लगे हुए हैं।